और बहोत सारा गाड़ी लगा हुआ हैं।

और हॉल रूम में पंख लगा हुआ है।

कलर बहुत अच्छा लग रहा है घर का।

और तीन लोग है खड़े है वो देख रहे हैं।

बहुत बड़ा नदी है और बहुत भीड़ लगा हुआ है।

एक नांव सामने में है और दो लड़का फोटो घिचा रहे हैं।

बच्चा लोग हैं। सब अपना अपना ड्राइंग बना रहे हैं।

उसके बगल में पेड़ है बहुत घना सा --

बोहोत अच्छा लग रहा है और रोड़ एकदम साफ है।

और ससरिया मे भी ससरने का बहुत अच्छा है।